इस फोटो मे मुझे ड्रम दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे एक टंकी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे टेबिल कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गीसल पट्टी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारी गिट्टी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे टेबले दिखाई दे रही है।